रेलिंग का कलर ऑरेंज और पिंक दिख रहा है साथ ही यहां पे बहुत सारे पेर हैं।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहे हो यहां पे दो सरके दिख रही हैं जिनके साइड में वाइट कलर की स्ट्राइप्स की हुई है।

जिसका रंग यहां पे हरा और मिट्टी का रंग ब्राउन दिख रहा है।

साथ ही यहां पे कुल बहुत सारे पेड़ और पुजारी अभी दिख रही है जो कि ब्राउन और ग्रीन कलर की है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं यहां पे एक लाइब्रेरी दिख रही है जिसमें कई सारे किताबें रखी हुई है हिंदी और इंग्लिश की --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

साथ ही एक अंकल भी दिख रहा है जिन्होंने यहां पे वाइट और ब्लैक कलर की चेक शर्ट पहनी है पीछे भी एक इंसान दिख रहा है।

और यहां पे जो है एक कैलकुलेटर और एक फोन भी रखा हुआ दिख रहा है जमीन पे --